यहाँ एक किराना दुकान दिख रहा है दुकान के अंदर वाशिंग मशीन है बहुत सारे अंडे दिख रहे हैं बहुत सारे --

सरकारी स्कूल ऑरेंज कलर का है बहुत सारे पेर दिख रहे हैं दिख रहे हैं गमला दिख रहा है --

एक बहुत बड़ा ब्रिज दिख रहा है ब्रिज पुराना है बहुत सारे पानी हैं।

एक बहुत बड़ा फील्ड दिख रहा हैं फिल्ड में बहुत सारे भगवान का मूर्ति लगा हुआ है मूर्ति में बहुत सारे लाइट लगे हुए है।

बहुत सारे ट्रक दिख रहा है बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं एक-एक दुकान दिख रहा है बहुत सारे घर दिख रहे हैं।

इस रूम में हम देख रहे हैं एक वाइट कलर का और ग्रीन कलर का दीवाल है।

और कुछ पेड़ के सामने एक तार दिख रहा है पोल दिख रहा है और इसके बगल में एक बाइक भी दिख रहा है।

और साइड में एक जे_सी_बी दिख रहा अ बहो बहोत सारे खिड़की भी हैं घर में और असमान--

बहुत सारा ग्राउंड भी बड़ा सा छोटा सा है और आईना भी लगा हुआ है ये जिम है लाल और पीला कलर का --

ऑयल का भी एक लोगो भी दिख रहा है आदमीन भी बहुत दिख रहे हैं अगल-बगल में बिल्डिंग भी बहुत है।